और एक आदमी आ रहा है और एक आदमी जा रहा है।

किसम-किस्म के पेड़ और पौधे छोटे-छोटे फूल और पौधे--

उनको रस्सी से बांधा गया है।

यहां पर एक हॉल है।

और कंप्यूटर के टेबल बाजू एक सी_पी_यू है।

दुकान के सामने और दो आदमी ठहरकर--

औरत के हाथ में लाल रंग की चूड़ियां है।

एक केरमबोर्ड दो लगे हुए हैं।